अंदर काउंटर में दो पर्सन हैं जो दवाइयां दे रहे हैं।

यहां एक ट्रेनी हैं जो उन्हें योगा करवा रहे हैं।

योगा हमारे सेहत के लिए बहोत है अच्छा होता हैं हमें रोज करना चाहिए।

मॉल का व्यू है। जिसमें जैक एंड जोंस जूनियर जूनियर के लिए यहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं। बहोत सारे कपड़े हैं। जीन्स टी शर्ट --

यहां दो लोग हैं कुछ गाड़ियां है।

यहाँ पे सीमेंट है जो अभी प्लास्टर हुआ है।

का नाम है माता सुंदरी पब्लिक स्कूल ।